अ कल कारपेट से सज सजाया गया है हमे बोहत सारे स्पीकर भी दिख रहे है।

यहाँ हमे उत्तर प्रदेश का कोई कारखाना ईंटा का कारखाना दिख रहा है। जहाँ पे इसको ईंटा भट्टी भी कहा जाता है।

और अंदर आने का हमें राश्ता दिख रहा है। उसमें बहोत बड़ा दरवाज़ा दिख रहा है। हमें कच्चा जमीन पे भी एक राश्ता दिख रहा है और थोड़ा दूर हमें एक --

वो किताबों में वो भी दिख रही है हमें बहो बहोत तीन लाइट दिख रहे है और तीन लाइट ये चालू हैं ये भी दिख रहे हैं।